यह एक घर का दृश्य है घर की दीवारें व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

घर के अंदर एक काउंटर भी बनाया हुआ है जो ब्लू कलर का है।

इस नदी के किनारे बहुत सारा सीढ़ियां बनाया हुआ है।

इस रूम में एक शोकेस भी रखा हुआ है।

इस टेबल के किनारे बहुत ही पुराना दीवार भी दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

दुकान के बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ है।

प्लास्टिक के छोटे छोटे टेबल भी रखे हुए हैं।

इस रोड के किनारे किनारे मछली का दुकान लगाया हुआ है।

यह मूर्ति का दृश्य है।

बहुत सारे औरतें भी उस बेंच पर बैठे हुए हैं।

और मूर्ति के बा पीछे एक व्यक्ति खड़ा है।

किले के बाहर एक गेट भी बनाया हुआ है।

यह टायर का दृश्य है यहां पर बहुत सारा ब्लैक कलर का टायर रखा हुआ है।

एक ट्रक भी लगा हुआ है।

और इस दुकान में बहुत सारा बड़े बड़े मछली भी रखे हुए हैं।

इस दुकान में बहुत सारा आलमारी भी बनाया हुआ है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है।

सभी अलमारियों में बहुत सारा डब्बा भी रखा हुआ है।

दुकान के बाहर कुछ बाइक भी लगाए हुए हैं।

यह एक घर का दृश्य है।

बिल्डिंग के बाहर कांच लगाया हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

बलून का कलर ब्लू येलो और व्हाइट है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

दीवारें नीला कलर से पेंट किया हुआ है।